यह एक दुकान है इस दुकान में एक बहुत बड़ा काउंटर है।

उस काउंटर के ऊपर कई प्रकार की पुस्तके और पेन भी रखी हुई है।

और इस इनके पास तीन औरतें बैठी हुई है।

और चेयर बिया । उस चेयर पर एक मैडम बैठी हुई है।

इसम इस दुकान में कई व्यक्ति चाय पी रहे हैं।

और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है जिसने जींस की पेंट और वाइट शर्ट पहन रखी है और फोन चला रहा है।

इसमें कई प्रकार के पंखे भी हैं जिनका कलर ब्लैक और वाइट है।

और यहां पर एक बोर्ड भी है रेड कलर का जिसपे लिखा द इंपीरियल ।

इस पर लिखा हुआ है बी एल यू ई ब्लू जो नीले कलर में है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ व्यक्ति खाना खा रहे हैं।

इस घर में कई प्रकार की लाइटें भी हैं।

जिसमें कई प्रकार की बस है कलर व्हाइट और हरा है।

और इसमें पंखे भी रखे हुए हैं और लेटें भी हैं।

और इस मंदिर के गेट पर नीले कलर की चादर लगी हुई है।

जिसमें कही प्रकार की लाइटे भी लगी हुई हैं।

और गमले भी है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक डॉग भी खड़ा है और बिल्डिंग भी लगी हुई है।

यह एक ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं।

इस पर लिखा हुआ है आकाशवाणी नजीबाबाद।

और रगीनि कलर की लाइटे भी लगी हुई है।

जिसने ब्लैक कलर की पैंट और पिंक कलर की शर्ट पेहन रखी हुई है।

जिसने रेड कलर का नायरा कट पहन रखा--

और रेड कलर की नीचे चादर बिछी हुई है।

इसमें लइटा भी लगीं है और ए_सी भी है।

यह एक मस्जिद है जिसका कलर व्हाइट है।